आराम से उसे कोई कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

ये जगह काफी पार्या पर्याप्त मात्रा में है।

देखिए दूल्हा कैसे इंतजार कर रहा है कि उसकी दुल्हन कब आएगी और वो एक दूसरे के साथ और बहोत सारे फोटो क्लिक करवाएंगे जैसे--

जागरूकता का अभियान चल रहा है यहां विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगे हैं लोग इकट्ठा हैं।

यहां देखिए एक शादी में चार लोग है दो लड़की है तीन लड़का है जो शादी में फोटो क्लिक करवा रहा है सब देखिए पीछे डेकोरेशन भी काफी अच्छी और शानदार की गई है।

यह देखिए ट्रक है यहां पे सारा लकड़ी है जो लोड होगा और पुराना घर दिखाई दे रहा है एक लड़की है जो बाल खुला की हुई है पिंक कलर का।

ये क्या ये तो एक अस्पताल दिख रहा हैं मुझे एक फैन हैं खाली जगह है जहां--

और एक लड़का भी है देखिये वो घूम रहा है सब लग रहा है कि कहीं जा रा सब।